नमस्कार java interfaces पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम interface बनाना
implementation classes बनानाऔर interface के उपयोग के बारे में सीखेंगे
इसके लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ ubuntu ऊबंटु 1204 jdk 17 और eclipse 431
इस tutorial का अनुसरण करने के लिए आपको java और eclipse ide का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
आपको java में subclassing और abstract classes का ज्ञान भी होना चाहिए
यदि नहीं है तो java से संबंधित tutorials के लिए कृपया प्रदर्शित link पर जाएँ
सबसे पहले interface के बारे में सीखते हैं
इंटरफैस में abstract मैथड्स और static data members का set शामिल होता है
यह बिना body के मैथड्स के set के signatures को परिभाषित करता है
इसे interface कीवर्ड का उपयोग करके घोषित किया जाता है
अब eclipse पर जाएँ और interfacedemo नामक now project बनाएँ
यहाँ हम interfaces के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक classes और interface बनायेंगे
src folder पर rightclick करें और new> interface पर click करें
name animal type करें और enter दबाएँ
ध्यान दें कि interface कीवर्ड का उपयोग interface को परिभाषित करने के लिए किया जाता है
अब screen पर प्रदर्शित code type करें
यहाँ interface का name animal है
इसमें तीन abstract मैथड्स talk see और move शामिल हैं
interface में सभी तरह के मैथड्स public और abstract परस्पर हैं
एक interface में constant variable declarations भी शामिल हो सकता है
यहाँ constant string value mammal variable type1 के लिए असाइन है
और reptiles variable type2 के लिए असाइन है
सभी constant values एक interface में परिभाषित हैं जो public static और final है
आगे हम उदाहरण के साथ interface के लिए implementation class के बारे में सीखते हैं
यहाँ human class है जो animal interface लागू करता है
अत: इसे मैथड्स talk see और move के लिए कार्यान्वयन प्रदान करना होगा
class भी कई interfaces का कार्यान्वयन कर सकता है
जैसे कि उदाहरण में दिखाया गया है human class दो interfaces animal और action का कार्यान्वयन करता है
ध्यान दें कि syntax में उपयोग किए गए comma operator को विभिन्न interfaces की पहचान करनी है
अब इस class को दोनों animal और action interfaces में सभी abstract मैथड्स के लिए कार्यान्वयन प्रदान करना चाहिए
figure यहाँ कार्यान्वयन संबंध प्रदर्शित करता है
animal class एक interface है
human और snake classes दो implementation classes हैं
human class talk see और move मैथड्स के लिए अपना स्वयं का भिन्न कार्यान्वयन प्रदान करता है
और snake class talk see और move मैथड्स के लिए अपना स्वयं का विभिन्न कार्यान्वयन प्रदान करता है
अब सैम्पल program के साथ interfaces के उपयोग को समझते हैं
default package पर rightclick करें और human नामक class बनाएँ
अब इसे animal class का implementation class बनाने के लिए type करें implements animal
अब हम eclipse ide में एक error देख सकते हैं
यह error इंगित करता है कि हमें animal interface को implementation प्रदान करना चाहिए
देखें कि इस error को कैसे सुधारें
अब talk see और move मैथड्स परिभाषित करते हैं
अत: type करें public void talk curly brackets में type करें system out println quotes में i am a human and i belong to
अब हम animal interface में घोषित static final variable type1 के value का उपयोग कर सकते हैं
अत: type करें + animal type1 + quotes में family semicolon
अब see मैथड लागू करते हैं
अत: type करें public void see curly brackets में type करें system out println quotes में i can see all colors semicolon
हमें move मैथड भी परिभाषित करना चाहिए
अत: type करें public void move curly brackets में type करें system out println quotes में i move by walking semicolon
ध्यान दें error गायब हो जाती है एक बार सभी मैथड्स इंप्लिमेंट होते हैं
आगे हम सीखेंगे कि snake class कैसे परिभाषित करना है
मैंने इसे पहले से ही अपने project में बनाया है
कृपया अपने project में snake class बनाएँ और screen पर प्रदर्शित निम्न code type करें
अब code पर जाएँ
हम देख सकते हैं कि animal interface के सभी मैथड्सtalk see और move इस class में लागू हैं
यहाँ talk मैथड i am a snake and i belong to prints करता है
फिर animal type2 की value printed होती है और फिर family की
यहाँ see मैथड i can see only in black and white prints करता है
move मैथड i move by crawling prints करता है
ध्यान दें human class के talk see और move मैथड के स्वयं के कार्यान्वयन हैं
और snake class के talk see और move मैथड्स के स्वंय के कार्यान्वयन हैं
अब default package पर rightclick करें new> class पर click करें और फिर demo name type करें
इस केस में हमारे पास main मैथड है
अत: type करें main और फिर main मैथड बनाने के लिए ctrl + space दबाएँ
screen पर प्रदर्शित निम्न code type करें
इस line में human animal interface का उपयोग करके human class दृष्टांत करते हैं
यह animal h equals new human के रूप में दर्शाया गया है
अब हम इस object को h talk ; h see ; h move ; के रूप में उपयोग करके विभिन्न तरीकों को लागू कर सकते हैं
फिर हम animal interface का उपयोग करके snake class दृष्टांत करते हैं
अब हम इस object का उपयोग करके भिन्न मैथड्स को लागू कर सकते हैं जैसे कि दिखाया गया है
अब इस demo program को now करते हैं
अत: demo class पर right click करें और फिर run as> java application चुनें
हम output देख सकते हैं
ये human class object h का उपयोग करके talk see और move मैथड्स लागू करके printed हुए हैं
ये snake class object s का उपयोग करके talk see और move मैथड्स लागू करके printed हुए हैं
अब interface और abstract class के बीच भिन्नता का पता लगाते हैं
interface में सभी मैथड्स abstract होने चाहिए
interface में यहाँ कोई भी constructors concrete मैथड्स नहीं होना चाहिए
static मैथड्स और main मैथड्स नहीं होना चाहिए
लेकिन एक abstract class में यह सब हो सकता है
interface में variables static और final होने चाहिए
यहाँ abstract class के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है
इसी के साथ हम tutorial के अंत में आते हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने interface बनाना
implementation class बनाना और
interfaces के उपयोग के बारे में सीखा
नियतकार्य के रूप में vehicle interface बनाएँ जिसमें brake और run मैथड्स शामिल हो
एक और fuel interface बनाएँ जिसमें निम्न मैथड्स शामिल हो
subclass car बनाएँ जो दोनों interfaces vehicle और fuel का कार्यान्वयन car
यहाँ brake मैथड car applies power brake print करना चाहिए
और run मैथड car is running on 4 wheels print करना चाहिए
इसीतरह fill मैथड fuel filled के type और quantity print कर सकता है
उदाहरण के लिए: 10 litres of petrol
pay मैथड दी जाने वाली कीमत print करने के लिए उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए pay rs 640
एक और bike subclass बनाएँ जिसमें फिर से दोनों interfaces vehicle और fuel का कार्यान्वयन करता हो
यहाँ brake मैथड bike applies hand brake print कर सकता है
और run मैथड bike is running on 2 wheels print कर सकता है
फिर fill और pay मैथड्स लागू करें जो पहले समझाये गए थे
आखिरकार परिणामों को सत्यापित करने के लिए demo class बनाएँ जिसमें main मैथड शामिल हो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
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है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
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा समर्थित है
इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
यह script विकास द्वारा अनुवादित है
iit बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूं हमसे जुडने के लिए धन्यवाद